अगल-बगल में छोटा-छोटा पेड पौधा बहुते है बिल्कुल ही अच्छा नजारा है। इहाँ पे आस-पास में बहुत भागो भाग है।

इ यहाँ पे बहुत बत्तका है। इहाँ पे बहुत बत्तख है बत्तख रंग-बिरंग के है।

इगो दोकान है दोकान बहुत बड़ा है तरह-तरह के यहां पर लाइट भी लागल है देखने में बहुत सुंदर दुकान लगय है यहां पर घास वाला चटाई भी बिछाईल गलेहन है।

तरह-तरह के आदमी सब यहां कपड़ा खरीदे अबहय हैं दुकान प है पसंद करय है पैसा देय के कपड़ा--

यहाँ पर बहुत सुंदर सुन्दर झील भी हैगो लगाई हैं बैठण का वि जगह हैं।

रस्ता भी दिखायाइ पड़य हेय हीया पे बहुत बड़ा-बड़ा पौधा टाइप बन के लगेय है।

अगल बगल में बहुत अच्छा-अच्छा दुकान भी है लाइट बहुत अच्छा से लगायल गैले है पंखा भी टांगल है।

ये बिल्डिंग है इमारत ऊंची चौड़ी और मजबूत है बहुत मंजिला है।